इस पिक्चर में हमें सामने एक जूस की दुकान दिखाई दे रही--

व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

जिस स्कूल का नाम है लक्ष्य इंटरनेशनल अकैडमी ।

उसके पीछे बड़े बड़े हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें हमें सामने एक लाल रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यह हमें एक परचून की दुकान दिखाई दे रही--

इसमें ये अपनी छत पर योग कर रही हैं।

छत पर टैली लगी हुई दिखाई दे रही है।

से लाल मैट दिखाई दे रही है।

इसके अंदर हमें एक सामने ही लकड़ी की मशीन दिखाई दे रही--

जिसमे की औरतों की अलग लाइन दिख रही है और आदमियों की अलग लाइन --